उस दुकान के बाहर लाइटिंग की हुई है।

मुझे इस चित्र में एक पिकनिक स्पॉट नजर आ रहा है।

लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पहाड़ से एक झरना बह रहा है।

बहुत सुंदर डिजाइन की हुई है।

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है इस दुकान में--

कार्ड लिखा हुआ है इस इमारत के सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस पार्क के बीच में एक फाउंटेन लगा हुआ है उस फाउंटेन के अंदर--

मुझे इस चित्र में एक गार्डन नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक पहाड़ नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक चर्च नजर आ रहा है।

उस नदी के ऊपर से एक फ्लाई ओवर जा रहा है।